बहुत सारे इसके दूसरे साइड में हमें --

और इसके आगे जो सतह है --

ये पत्थर बड़े और छोटे है सारे पत्थर --

आसमान भी एकदम साफ है एक आदमी है जो नीले कलर का टी-शर्ट है।

कलर करने वाले वाइपर है जिसमें --

यह एक गेराज का दृश्य है।

और इसके स्टेयर के पास --

लोहे का ग्रिल से इसको कवर किया गया है।

यह एक मध्यविद्यालय है जो हल्के --

यह विद्यालय काफी लम्बा है।

जो स्कूल का बस है और यक --

खड़ी है और पीछे इनके बहोत सारे आदमी बच्चे --

जो लाल रंग की है इसके बगल में हरे रंग की एक ईमारत है।

छोटी बिस्किटस अगरबत्ती और इसके साइड में एक फ्रीज भी है।

यहाँ पे एक खाली मैदान है।